इमेज मे हमे दो ऑटो रिक्शा जो की एक ग्रीन और इसका रूफ येलो कलर का है एक जो ब्लू कलर का है यहां पे हम बहोत सारे बलून के गेट देख सकते हैं।

हमें एक ऊपर एक टी_वी_एस का बोर्ड और उसके और उसके साइड में एम_आर_एफ का जिसपे टायर्स एंड सर्विस --